टॉप्स दिख रहे हैं और यहां पर लाइट्स भी लगी हुई हैं।

यहां पर मुझे एक आदमी दिख रहा है।

कुछ बॉटल्स भी राखी दिख रही है।

और जिसे फूलों से सजाया है।

यहां पर मुझे एक--

बीच से आ रहा है।

बाइक्स खड़े दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर छोटी छोटी सी--

कपड़ों के रुमाल्स दिख रहे हैं।

मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।

और यहां बहुत ज्यादा पानी--

और यहां कुछ लोग भी--

यहां पर मुझे--

यहां पर मुझे बहुत से घर दिख रहे हैं।

यहां मुझे एक दुकान दिख रही है।

यहां पर मुझे टोपी पहने एक--

और यहां लाइट्स भी लगी दिख रही--

और मुझे यहां पर कुछ बाइक्स दिख रहे हैं।

और यहां एक बिल्डिंग बन रही है।

जिसकी बहुत अच्छी बॉडी दिख रही है।

और मुझे बाइक भी दिख रहा है।

और यहां एक पेड़ भी हैं।

और नीचे टाइल्स लगी दिख रही है।

हरे कलर का पेड़ भी दिख रहा है।

हरी घास भी लगी दिख रही है।

चेयर पर बैठे दिख रहे हैं।

और इनके सामने एक-एक--